बच्चो द्वारा सिखाया जाता है सब को और काफी ज्यादा यहाँ बच्चे आते है योगा सिखने के लिए और यहाँ सीखते है योगा--

आदमी आये हुए है जो यहाँ फोटो खीचा रहे है।

ये देखने के लिए आते है सब कोई ये लोग तरह तरह के प्रोग्राम दीखाते है इन बच्चो--

यहाँ लोग दूर दूर से ये अक्सर यहाँ आते है।

यहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है लोगो की यहाँ लोग कपड़े खरीदने के लिए आते है यह काफी अच्छे-अच्छे कपड़े रखते है इस मोल में।

और काफी अछे लग रहे है ये मंदिर देखने में क्रिशचन लोग का--

जलाश है जो काफी अच्छे दिख रहे है काफी बड़े है |